यहाँ पर हमे झरने दिखाई दे रहे है और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमे कुछ जंगली एरिया सा दिखाई दे रहा है जिस में बहुत लम्बे लम्बे साबुन जैसे पेड़ दिख रहे है।

और हमे एक खंभा भी दिखाई दे रहा हे।

यहा पर ये झरने दिखाई दे रहे है और पेड पौधे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे है।